अह टेबुल लगा हुआ है बोतल रखा हुआ हैं टेबुल पे--

एक बा एक बाइक है बाइक के पास में एक आदमी खड़ा है ढेर सारा सीढ़ियां ल दिखाई दे रही हैं।

यह एक छोटा सा दुकान है दुकान के अंदर में ढेर सारे सामान रखे हुए--

एक जगह है जगह के पास में बहुत सारी मूर्तियां लगाई हुई है।

एक बड़ा सा घर है घर के बाहर दीवाल पे कुछ लिखा हुआ है।

एह पेड़-पौधे दिख रहे हैं हुं बहुत सारे एंह --

एक बड़ा सा नदी दिख रहा है नदी के पास में एक बड़ा सा गा गाड़ी दिख रहा है।